यहां पे भी कुछ समारोह होते नज़र आ रहा हैं रात्रि का समय वहाँ पे बड़ी सी इमारत दिख रही है उसको लाइटिंग से सजाया हुआ दिख रहा है नीचे की तरफ भी लाइट का फोकस लगाया हुआ है ।

इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े पोल है। उसकी लाइट्स की तारे दिख रही है। दूर एक जो है टावर जैसा दिख रहा है। कोई इंसान वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे है।

जिम्स दिख रहा है जिम्स के दीवारों पर आइने लगे हुए है वहां पे कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए है सामने से आने जाने के लिए दरवाज़ा दिख रहा है जिसमें ग्लासेज लगे- बैठा- बैठाये हुए है।

फूलो के पौधे दिख रहे पेड़ दिख रहे और वहाँ पे कार जैसा कुछ खड़ा दिख रहा है। पानी में कुछ सफ़ेद सफ़ेद कलर का दिख रहा है और आसमान दिख रहा है। दिन का समय है।

सफेद कलर कि इमारत दिख रही है। वहाँ पर एक टावर भी दिख रहा है और दोनों बगल रा मम्म --

बड़ा सा इमारत दिख रहा है। वहाँ पर कुछ सीढ़िया बनी हुई है। ऊपर से चढ़ के अंदर के तरफ और इमारत के बहार दोनों तरफ दो झंडे सा कुछ लगा हुआ है।

वहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा सा खंबा दिख रहा है पेड़ दिख रहा है और दूसरी तरफ एक आसमान दिख रहा है संध्या का समय दिख रहा है वहां पे कोई इंसान नजर नहीं आ रहे हैं ।

ये एक गेट दिख रहा है और वहाँ पे एक सफेद कलर कि बड़ी सी गाड़ी आई हुई दिख रही है। एक तरफ गेट के कुत्ता खड़ा है। एक तरफ से भैंस खड़ी है गाय ऐसा कुछ --

उअरर आसमान दिख रहा है। दूर कुछ टावर दिख रहे और सामने वहाँ पत्रिका शेड बने हुए दिख रहे हैं। कुछ पेड़ पौध दिख रहे हैं। दिन का समय है।

खूब सारा पानी दिख रहा है पानी मे कुछ सफेद सफेद कलर के बगले दिख रहे हैं ।

एक तरफ एक घर जैसे कुछ दिख रहा है। वहाँ पे पानी कि टंकी रखी हुई दिख रही है। कुछ कपड़े सूखते हुए नजर आ रहे है। और पेड़ पौधे दिख रहा है। आसमान दिख रहा है। दिन का समय दिख रहा है। बाजू मे भी कुछ घरे दिख रही --

और वहां पे एक झण्डा लहराता हुआ नजर आ रहा है। दो झंडे दिख रहे हैं। आसमान दिख रहा है। नीचे कि तरफ हरा-हरा पानी मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिन का समय है। कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है।

और डम्प वहां पे इन्सटूमेन्ट रखे हुए है। आईने लगे हुए है। एक तरफ वहां पे जो लाइट का फोकस चालू है। नीचे की तरफ कुछ कार्पेट डाले हुए है। अलग का आकार कलर की। --

जिम्स दिख रहा है जिम्स में इंस्ट्रूमेंट रखे हुए दिख रहे है वहां पे एक आदमी दिख रहा है दीवारों पर सफेद कलर दिया हुआ है वहा पर अ- हर तरफ जो आईने लगे हुए दिख रहे है।

पानी और थोड़ा-थोड़ा जमा हुआ दिख रहा है। दूर कुछ पेड़ पौध दिख रहे है। आसमान दिख रहा है। दिन का समय है। कोई पशु पक्षी या कोई इंसान वहां पे नजर नहीं आ रहे --